यहाँ पर एक टपरा खुला हुआ है जिसमें एक जैंट्स बैठा हुआ है काउन्टर के ऊपर ऊपर आसमान है जो पूरा स्काइ ब्लू कलर का है।

सामने एक बैनर लगा हुआ हैं और बैनर में कुछ लिखा हुआ हैं यहाँ पर एक शोकेश भी रखा हुआ हैं जहाँ पे बहुत सारी मिठाईयाँ वैगरह रखी हुई हैं एक रखी हुई हैं जिसमें बहुत सारे नारियल रखे हुए हैं।

और यहाँ पर एक प्लेटफार्म बना हुआ हैं जहाँ पर बहोत भीड़ लगी हुई हैं और ऊपर आसमान है जो स्काई ब्लू कलर और --

गार्डन मे जो ग्रीन कलर की है यहाँ पर एक साइकिल खड़ी हुई है एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसमे एक बैग लगा हुआ है ऊपर आसमान है जो स्काई --